पीछे बड़े बड़े बाहर तरफ बड़े बड़े पेड लगे हुए दिखाई दे रहे है।

काफी सारी भीड़ दिखाई दे रही है एक पंडाल लगा हुआ है।

जिस मे सामने भी भीड दिखाई दे रही है पंडाल मे एक ग्रीन मैट बिछा हुआ है काफी सारी दूर से बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बड़ा पेड दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे और पंडाल लगा --